पूजा स्टूडेंट लोग जो है वो बड़ी धूमधाम से करते हैं क्युकी माँ सरस्वती का ही देन है की विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा --

पैट्रोल पंप को अब चालु कर दिया गया है इसका उद्घाटनकर्ता पंप मालिक थे और खुद ये पंप मालिक जो है वो इसका उद्घाटन किए हैं।